इस हाई कोर्ट में मुझे शीशे और दरवाजे खिड़कियों--

और यहां पे मुझे कुछ पंखे भी नजर आ रहें हैं और कुछ बेले लटकी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर मुझे हरी भरी घास भी नज़र आ रही--

यहां पे मुझे रंग बिरंगे गुब्बारे लटकाए हुए दिखाई दे रहे हैं और ग्रीन कलर के पिलर्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बेड दिखाई दे रहा है जिसे पिंक कलर की चादर बिछाई हुई है। एक चेयर और टेबल भी नजर आ रहा है और एक एल_ई_डी दीवाल पे लटकी--

और रे रेड कलर की ट्रॉली भी नजर आ रही है जिसमें प्याज रखा हुआ है।

यहां पे मुझे खिड़कियां दिख रही हैं जिसमें पर्पल कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

चार्जर और ब्लूटूथ भी नजर आ रहा है यहां पे मुझे आईफोन --

आसपास मुझे हरी भरी घास और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

एक लड़का दिखाई दे रहा है जो डांस कर रहा है।